ये कैस्ट्रॉल का आ कैस्ट्रॉल ऑयल का बोर्ड यहां पे कुछ कार्स खड़ी हुई है कुछ--

यहाँ पर जो है बहुत सारे डॉग फूड्स रखे हुए हैं अलग अलग वैरायटी में अलग अलग तरीके में यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स के फूड्स रखे हुए हैं।

यहाँ पर चिप्स रखे हुए हैं बहुत सारे अलग अलग कलर्स में ब्लैक ग्रीन व्हाइट रेड --

अलग अलग कलर में यहाँ पे चिप्स रखे हुए हैं जिन चिप्स का नाम है प्रिंसिल्स --

यहाँ पर दो शॉप्स हैं एक शॉप्स प्रोटीन की है वेंट टू गेंस के नाम से यहाँ पे ऑल टाइप्स के--

जिम सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर और साइड में जो है एक शॉप और है जहाँ पर आप--

ये एक होटल का बेडरूम लग रहा है ये होटल का बेडरूम है यहाँ पे फैन लगा हुआ है बेड है टी_वी है यहाँ पे कुछ कर्डनस चले हुए हैं।

यहाँ पर जो है एक काफी लंबी बिल्डिंग है इस बिल्डिंग के बाहर कुछ छोटे छोटे पौधे--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

ये फोटो नवरात्रि का है यहाँ पर जो है दुर्गा माता की मूर्ति है और बजरंग बली है गणेश जी हैं।

ये जो है कुछ बच्चे हैं यह स्कूल का व्यू है प्राइमरी क्लास लगी हुई है प्राइमरी नर्सरी क्लास के बच्चे लग रहे हैं।

कढ़ाई के ऊपर रखी हुई है कढ़ाई के ऊपर ट्रे है ट्रे के अंदर जलेबियां है।

और इन जलेबियों का कलर जो है थोड़ा सा येलो टाइप में है।

ये एक पार्क का व्यू है जहाँ पर एक जो बैठने की जगह है उसमें एक कपल्स बैठे हुए हैं रेड कलर की जो--

ये जो है एक इंडिगो का एरोप्लेन है यहाँ पे इंडिगो एयरलाइंस चल रहा है।

यहाँ पे जो है कुछ मछुआरे जो मछलियां बेच रहे हैं।

कुछ मछुआरे छोटी छोटी मछलियां बेच रहे हैं और कुछ के पास बहुत बड़ी हैं और यहाँ पर काफी लोग खड़े हुए हैं मछली खरीदने आए हैं।

ये जो हेयर सलून है इस हेयर सलून का नाम बाल दाढ़ी स्पा एंड सलून है।

ये एक रेस्टोरेंट का है यहाँ पे चेयर्स लगी हुई है टेबल्स हैं और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है कि--

क्लेन कीप क्लेन एंड ड्रिंक विंग्स ये सब जो है।

हर तरीके की बुक्स है इसमें कुछ बुक्स का प्राइस लिखा हुआ है इंजीनियरिंग की जो बुक्स रखी हुई है यहाँ पे--

कुछ लोग घूम रहे हैं कुछ लोग खेल रहे हैं सामने एक बिल्डिंग है उसके आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

क्या इसके सामने दो आदमी खड़े हुए हैं और बहुत सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं और--

ये एक शोरूम है यहाँ पे जो है कुछ ड्रेसेस रखे हुए हैं तीन तरीके के ड्रेस है साड़ी है गाउन है।

ये एक शादी हॉल का व्यू है यहाँ पे सारे गार्ड्स साब बैठे हुए हैं।

ये एक समुंद्र का व्यू है यहाँ पर बहुत सारी बोट्स हैं।

ये एक होटल है। यहाँ पे डायनिंग टेबल्स वगैरा हैं और यहाँ पे बहोत सारी प्लेट्स लगी हुई हैं।

व्हाइट कलर की लाइटिंग है और इनकी दीवारों पर बहुत खूबसूरत सा वॉलपेपर लगा हुआ है।

ये बहुत एक बड़ा सा पहाड़ हैं बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं काफी लोग यहाँ पर हैं ।

जो जा रहा हैं और कुछ कार्स नीचे हैं जिन किस एक एक कार्स के टायर नहीं हैं और एक में टायर हैं जिसका बोनेट खुला हुआ हैं।

यहाँ पर दो ट्रैक्टर ट्रावली हैं ट्रक हैं टैंकर हैं और बहुत सारे पत्थर हैं रेत हैं यहाँ--

ये ग्राउंड हैं बहुत बड़ा और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं अलग-अलग तरीके के --

और बहुत ही हरे-हरे से और ये बहुत ही काफी बड़ा ग्राउंड हैं कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं बहुत दूर --

बहुत सारी कैंडल्स लगी हुई हैं यहाँ पर बहुत सारे कैंडल्स हैं एक गार्डन टाइप में हैं पेड़ लगा हुआ हैं और --

तो ये कैंडल्स की लो हैं बहुत ही हैं और यहाँ पे ब्लू ब्लू सी लाइट भी दिख रही हैं ।

यह कॉस्मेटिक की शॉप है यहां पे बहोत सारे मेकअप्स का सामान मिल रहा है यहां पे सामने--

ये जो हैं एक कैंडी शॉप हैं यहाँ पे इसका नाम हैं नेचुरल्स कैंडी नेचर्स कैंडी --

एक होटेल हैं यहाँ पे काफी तरीके की ब्रांचेस लगी हुई हैं टीवी लगा हुआ हैं ।

सामने टीचर्स हैं जो फ्लैग के नीचे खड़े हुए हैं और और इसके बाद सामने स्कूल की बिल्डिंग हैं।

यहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर --

पूरा ग्रीन ग्रीन ग्राउंड हैं और बहुत कुछ काफी लोग हैं यहाँ पर जो खड़े हुए हैं कुछ खेल रहे हैं और यहाँ पर काफी तरीके के बहुत सारे पेड़ --

यहाँ कुछ लेडीज हैं जो योगा भी कर रही हैं हाथ जोड़कर सूर्य नमस्कार हो रहा हैं ।

योगा चल रही हैं यहाँ पे बहुत सारी लेडीज हैं अलग-अलग ड्रेसेस पहनी हुई हैं ।

दो कंप्यूटर हैं और एक भाई खड़े हुए हैं और एक बैठे हुए हैं वाइट शर्ट में --

यहाँ पे फ्रूट्स की शॉप हैं यहाँ पे बहुत तरीके के फ्रूट्स रखे हैं बनाना हैं एप्पल हैं ।

किवी है ऑरेंजेस हैं मौसम भी हैं बहुत सारे फ्रूट्स यहाँ पर रखे हुए हैं और जो हैं यहाँ पर कुछ बाल्टियाँ हैं कुछ सामान एक पन्नी में पैक हैं ।

ये बहुत सारे बैलून्स लगे हुए हैं एक वाइट टी-शर्ट में लड़का खड़ा हुआ हैं कैप लगाकर --

बहुत सारे बैलूंस हैं राइड कलर के हैं हार्ट शेप में लगे हुए हैं कुछ बैलूंस उड़ रहे हैं ।

बहुत सारी चीजें यहाँ पे सेल हो रही हैं गैस वगैरह है यहाँ पे ऊपर ऊपर वो--

एक पर्दे डले हुए हैं हाफ हाफ में वॉलपेपर लगा हुआ हैं इसकी दीवार के ऊपर नीचे वाइट टाइल्स हैं बोर्ड हैं ।

यहाँ पर छत का काम चल रहा हैं सेंटिंग पड़ी हुई हैं नीचे दो लोग खड़े हुए हैं ।